बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं लग रहे हैं और बहुत ही मजबूत बने हुए हैं।

और बाइक्स वगेरा पे कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे--